ये एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस मे मुझे कुछ यहा लिखा हुआ आइडिया लिखा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहा बहुत सारे बलून लगे हुए दिखाई दे रहे है कम्प्युटर दिखाई दे रहे है कुछ लोग दिखाई दे रहे है चलाते हुए कम्प्युटर को दिख रहे--

मुझे कोई मंदिर बनी हुई दिखाई दे रही है मंदिर मे बहूत सारे यहा भीड़ दिखाई दे रही है और बहूत सारे लोग दिखाई दे रहे है यहा कुछ व्हाइट कलर की मंदिरे दिखाई दे रही है यहा कुछ ये लोगो कि भिड़ो नज़र भी आ--

दिखाई दे रही है बहुत सारी लोग दिखाई दे रहे नज़र आ रहे है कुछ बाउल नज़र आ रहा है यहा मुझे मिरचिया नज़र आ रही है मिर्ची दिखाई दे रही है हरी मिर्ची नज़र आ रही है और मुझे वो भी दिखाई दे रही बहुत सारे वेजिटेबल दि--

यहाँ पे इलेक्ट्रोनिक सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है फ्रीज कूलर दिखाई दे रहे है लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ कुछ चेअर नजर आ रही है कुछ यहाँ पे सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है।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

लाइब्रेरी दिखाई दे रही लाइब्रेरेरी बहोत सारी बूक दिखाई दे रही है सभी अल्मारियोमे जमी हुई दिखाई दे रही है यहा मुझे बहोत सारी लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है और बहोत सारी बूक नज़र आ रही है सभी बूक दिख--

स्कूल दिखाई दे रही है और इस स्कूल मे मुझे बहोत से बच्चे दिखाई दे रहे है और खेलते हुए नज़र आ रहे है।

यहाँ सिडिया बनी हुई है और यहाँ मुझे बहुत बड़ी गैलरी और ए पत्ते दिखाई दे र--

मुझे कुच्छ तिरंगे दिखाई दे रहे है लगे हुए दिखाई दे रहे है और यहाँ मुझे गेट के पास कुछ फेर की स्टॅच्यु दिखाई दे रहा है यहाँ कुछ चक्र जैसे दिखाई दे रहा है और मुझे चारों और बाउंड्री नज़र आ रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।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

मुझे कुच्छ कॉपी ही दिखाई दे रही है पेन दिखाई दे रही है ए एक काउंटर मे बहोत सारे समान रखे हुए दिखाई दे रहे है और अलमारी ओ मे बहुत ही समान दिखाई दे रही है पॅकेज पॅकेट मे रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक बहुत बड़ी नदी जैसी दिखाई दे रही है यहाँ मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ मुझे पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।